यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पे वाशरूम भी दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारी गुढ़ियाँ रखी हुई --

बिजली के खम्बे और बिजली के तार भी दिखाई दे रही है और ऊपर आश्मान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही --

कलर है ग्रीन ग्रीन और येल्लो रेड है पे नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।

रही है यहाँ पे एक माइक भी लगा हुआ है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।।

यहाँ पे निचे बहोत सारी धूल वगेरा पड़ी हुई दिखाई दे रही है पे लोहे के नल वगेरा भी पड़े हुए दिखाई दे रहे है यहा --

कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है वहां पे एक जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रही है नीचे जमींन दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है इसके दीवाल का कलर वाइट और रेड है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है।

यहाँ पे एक फायर विकेट भी रखी हुई दिखाई दे रही है और नीचे जमीन दिखाई दे रही है यहाँ पे एक खिड़की भी लगी हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट है।

यहाँ पे एक मकान बना हुआ है जिसकी दिवाल का कलर ईंटे और ये --